यहाँ पर एक बड़ा सा कुछ दिख रहा हे घर भी हे पत्थर डले हे बड़े-बड़े--

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है शोरूम है बाइक --

यहाँ पर एक बड़ा सा मेला लगा है और एक बड़ा सा मंदिर है लाल कलर का जिसके राउन्ड पेड़ लगे हुए हैं।